सामने एक बॉक्स जैसा दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्राउन कलर का दिखाई पड़ रहा है उस पे छोटे छोटे दो ताले लगे हुए है जो कि सिल्वर कलर में दिखाई पड़ रहे है बॉक्स के ऊपर कांच जैसा दिखाई पड़ रहा है उस पर एक लाइट चमकती हुई दिखाई पड़ रही है बॉक्स के अंदर ब्लू कलर का कपड़ा जैसा बिछा हुआ है उस पर कुछ सामान --

सामने बिजली के खम्बें जैसा दिखाई पड़ रहा है उसपे बहुत सारे तार लगे है सामने एक रेलिंग दिखाई पड़ रही है जो की ब्राउन कलर और सिल्वर कलर में दिखाई पड़ रहा है सामने कुछ मकान जैसा दिखाई पड़ रहा है सामने एक टॉवर जैसा त्रिकोण दिखाई पड़ रहा है जो की ग्रे कलर दिख रहा है ऊपर आसमान कलर ऑरेंज कलर और ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है।

दरवाजा दिखाई पड़ रहा हैं जो कि डार्क ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा हैं उस पर कुछ गोल सा चक्का जैसे बना हुआ हैंजो कि वाइट कलर में दिख रहा हैं साइड में कुछ दीवाल दिखाई पड़ रही हैं जो कि वाइट कलर में दिख रही हैं और ग्रीन कलर से सर्कल जैसा बना हुआ हैं साइड में कुछ बॉर्डर जैसा दिखाई पड़ रहा--

ट्यूबलाइट दिख रही है जो कि वाइट कलर में चमक रही है साइड में एक कैमरा भी लगा हुआ है दो पोस्टर लगे हुए है दिखाई पड़ रहे है जो कि दीवाल पे लगे है जो कि ग्रे कलर और ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहे है सामने एक खिड़की दिख रही है जो कि --

की गोल - गोल बना हुआ है जोकि वाशिंग मशीन की तरह दिखाई पड़ रहा है ऊपर बहोत से बल्ब लगे हुए है जोकि वाइट कलर में चमक रहे हैं।

उसके ऊपर खंभा है उसके ऊपर लाइट लगी हुई है साइड में कुछ मकान जैसा दिखाई दे रहा है जो कि ऑरेंज कलर में दिख रहा है साइड में कुछ--

रॉड लगी हैं उसपे कुछ पट्टी लगी हैं जो की रेड कलर मे दिख रही हैंसमाने एक बाल्टी दिखाई पड़ी हैंजो की ब्लैक कलर मे दिखाई पड़ रही हैं पीछे कुछ रैलिंग जैसा लगा हुआ हैं जो की ब्लैक कलर मे दिख रहा हैं।

रैलिंग जैसे दिखाई पढ़ रहा है जो की लोहे का है जो की ग्रे कलर और ब्राउन कलर मे दिख रहा है सामने बहुत सारा पानी दिख रहा है जो की ग्रे कलर ब्राउन कलर मे दिखाई पढ़ रहा है पीछे कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहे जो की ग्रीन कलर में दिख रहा है पीछे बहुत सारे मकान दिखाई पढ़ रहे है।